और घर के अगल-बगल बहुत सारे पेड़-पौधे भी है घर के बगल में पहाड़ भी है।

और देकने में मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर का कलर है वाइट ।

और इस पार्क में खुदाई चल रहा है दो लोग कुदाल लिए हुऐ हैं और खुदाई कर रहे है और इसमें लोग छत्ता लेके भी खड़े हुए है बहुत पहले --

इ एक आंगन हैं आंगन में तीन चार मुर्गे हैं!

और बहोत सारी लड़कियाॅं हैं इधर बगल में कपडे भी सूखा रही हैं लड़कियाॅं --

ये एक जिम क्लब हैं यहाँ पर लोग जिम करने के लिए आते हैं और जिम करने के बाद उनका वेट कम होता हैं और वो पतले दिखने लगते हैं।

और पार्क में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं पार्क के अगल-बगल बहोत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बने हुए हैं।